पौधे हैं पेड़ हैं एक आदमी है परछाईयाँ हैं।

लाइटें हैं आदमी हैं औरतें हैं पेड़ हैं पौधे हैं --

फूल हैं खंभे हैं लाइटे हैं घर हैं खिड़किए हैं दरवाजे हैं।

एक कमरा है मेज़ है कुर्सियां हैं लाइट है बहोत सारे लोग हैं ।

बहोत बड़े-बड़े पत्ते हैं घास है बड़े-बड़े पेड़ हैं।

पहाड़ है मंदिर है शिव जी है ढोलक है नाग है मालाएं हैं पानी है चबूतरा है पेड़ हैं।